सामने बड़ी सी नदी दिख रही है जिसका पानी ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है और जिसमें सफेद कबूतर बैठे हुए हैं और उड़ रहे हैं और दूर बहुत सारी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं जो--

कुछ सफेद कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है ऊपर आसमान में ब्लैक एंड व्हाइट और सफेद दिखाई दे रहा है और सामने एक--

ना दिख रही है जिसमें नीचे हरा कलर और कहीं कहीं है।

एक साइड सफेद दिख रहा है। एक साइड आधा सफेद आधा नीला दिखाई दे रहा है और नीचे सड़क पर कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं। साइड में एक पंजाब नेशनल बैंक है।

सामने एक हॉल है जिसमें गोल बेंच रखी हुई है जो काले कलर की है इनके सामने शब्द कुर्सी रखी हुई है एक पर एक महिला और एक छोटी बच्ची बैठी हुई है एक पर एक लड़का एक लड़की --

लगे हुए हैं ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट नीला और ओ पर्पल कलर का आसमान दिख रहा--

सामने एक बड़े सा गोल गेट दिख रहा है जिसमें ऊपर लाल और पीले कलर का है और का लोहे के नीचे गेट लगे हुए हैं जो पीले कलर के है और इसपे एक मोटरसाइकल दिख रही है जिसके ऊपर दो आदमी बैठे हुए हैं और एक आदमी इधर चल कर आ रहा है और दो आदमी--

कुछ तस्वीरें लगी हुई है एक गणेश जी की और एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और साइड में एक लंबी कुर्सी डली हुई है जिसके ऊपर रंगीन चद्दर--

सामने एक हॉल दिख रहा है जिसमें नीचे सफेद कलर है और छत और सामने की दीवाल सब सफेद है और--

बेड़े दिखाई दे रहे हैं और दीवार के कोने में एक झाड़ू--

बैठे हुए जो नीले कलर की ड्रेस पहने हुए हैं और बेंच पर किताबें रखे हुए हैं और उनके बैग नीचे--

सामने एक स्कूटी खड़ी हुई है जिसमें नीचे स्टैंड लगा हुआ है जो लाल--

सामने एक कॉलेज है जिसमें एक साइड बहुत सारी बेंचे लगी हुई हैं जिसपे बहुत सारे आ--

और महिलाएं बैठी हुई है ऊपर छत सफेद कलर की है जिसमें कुछ पंखे लगे हुए हैं और साइड की दीवार --

कत्थई कलर की है और कुर्सियां रखी हुई है जो पीले कलर की है और कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं जो काले कपड़े पहने हुए हैं।

है एक साइकिल खड़ी हुई है जिसकी सीट काली है और आगे कैंच के--

दिख रहा है और दूर बहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं जो कोई सफेद कोई लाल और--

खड़ा हुआ है और शांत की दीवाल पर ऊपर एक पंखा लगा हुआ है और ऊपर छत में लाइटिंग लगी हुई है।

पोस्टर लगे हुए हैं नीचे दुकान बनी हुई है एक नीला पोस्टर है जिसमें सफेद कलर से खालसा और उसमें सफेद पट्टी है जिसमें लाल कलर से अमृतसर के मशहूर--

एक लाल एक पीला रुमाल डाले हुए हैं एक के हाथ में मोटी बुक है और ऊपर छत क्रीम कलर की है और गेंदे के फूल की मालाएं लटक रही हैं और --

फिर दिख रही है और नीचे भी बहुत सारी कारें खड़ी हुई हैं जिसमें काला--

सामने एक टेबल बनी हुई है जो ऊपर कांच की है और नीचे लकड़ी की है इसके सामने तीन स्टू दो स्टूल दिखाई दे रहे हैं जो नीचे सफेद ऊपर पीले कलर की है साइड में सीढ़ियां बनी हुई है जो काली --

सामने बहुत सारी बेंच रखी हुई है जो ब्लैक कलर की दिख रही है और उन पर बॅग रखे हुए हैं वो भी ब्लैक --

सामने एक सड़क दिख रही है जिसमें नीचे सफेद और कथय कलर के टाइल्स लगे हुए हैं और।

यह सफेद लाइटिंग लगी हुई है छत नीले कलर की दिख रही है और बीच में गोल झूमर लटक रहे हैं और दोनों साइड रंगीन--

रखी हुई है और दूर बहुत सारे आदमी--